साथ में टेबल्स पर कुछ प्लेट्स रखी हुई है।

जिसके पास सोडा वॉटर की बॉटल्स पड़ी है।

यहां व्हाइट कलर के बोर्ड पर कितने सारे स्विच लगे हुए हैं।